हॉस्पिटल का सीन है जहां पे कार्डियक टेबल है।

और एक लड़का ब्लैक कलर का टी-शर्ट पहने--

जिसमें एक बॉडी दिखाते हुए--

ये एक आदमी खड़ा है जो--

यहां पे बहोत सारा कार है।

ये एक कपड़ा शॉप है जहां पे--

दरवाजा है और शटर है उसके सामने बिजली के खंबे है।

एक ब्राइडल में पिक चर है।

यहाँ पे केक है ओर आइसक्रीम है केक जो है गुलाबी कलर का हैं।

तीन चेयर अच्छा खाली चेयर है और उस टेबल के ऊपर --

ये एक मंदिर है सफेद कलर का।

बगल में एक ब्राउन कलर की मंदिर है।

दो तीन छत का बिल्डिंग दिख रहा है।

एक बड़ा सा चट्टान है और उसके पीछे एक और चट्टान--

है और हिमालया का फेसवॉश --